एक सिलिंडर भी है बगल में कुछ दूर पे एक दो साइकिल भी दिख रही है। उसके पीछे एक छोटा सा घर भी दिख रहा है। पेड़ भी बड़े-बड़े दिख रहे हैं।

आसमान ऊपर दिखाई दे रहा है पीछे बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है। साइड में कुछ घर भी दिखाई --

टेलीफ़ोन और एक आदमी रेड कलर के चेयर पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक रजिस्टर रखा है एक-दो चेयर और भी बगल में दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्यारियां बनी हुई है उसमे भी पेड़ लगे हुए हैं।

और लाइट भी अच्छी जल रही है नीचे फर्श पर रेड और ब्लू कलर है कालीन --

बीच में रोड गए हुए है उसके बाद गेट है गेट के बाद अन्दर भी काफी पेड़-वेर दिखाई दे रहे है। बड़े-बड़े पेड़ है।

और पि बगल वाले मे एक आदमी भी है अंदर मे और ए.टी.एम. बड़े शब्दो मे लिखा हुआ --

यहाँ पर हम देख पा रहे है कि एक बड़ा सा नदी है और उसके किनारे पे --

यहाँ पर हम देख पा रहे है कि भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया --